जहां पे मुझे बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे हैं।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

और चेयर के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखी हुई है।

और प्लास्टिक के कुछ पाइप भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे मुझे दो घंटे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे मुझे स्टील की रेलिंग भी दिखाई दे रही है और यहां पे पीले पिलर पर लाल कपड़े बाने गए --

मॉल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं।